व्हाइट कलर की पाइप दिखाई दे रहे है खुला आशमान दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर की दीवार दिखाई दे रही है।

यहाँ पर कुछ किला टाइप दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिखाई दे रहे है ऑरेंज कलर की एक बाउंडरी दिखाई दे रही है अँड पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहा पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है व्हाइट कलर का एक कमल दिखाई दे रहा है अँड कुछ गोल्डन कलर के बाउंड्री दिखाई दे रही है।